और यहाँ पे बहुत ही सुंदर नज़ारा है जहाँ पे अपने अ लोग भी म फोटो खिचने के लिए भी आते हैं।

यह एक बहोत सुंदर दृश्य है जिसमें कई पेड़ पौधे भी दिखाए गए हैं।

यहाँ पे पहाड़ों में धूप दिख रही है जिसके वजे से पहाड़ों का भी दृश्या बहुत ही सुंदर दिखई दे रहा है।

और है जिसेके किनारे बहौत ही सुंदर एक नहर झील हैं जो नीली रंग की है।

यह एक बहोत सुंदर बगीचा है जहाँ पर एक महिला पौधों को पानी दे रही है।

यहाँ एक बहोत सुंदर प्राकृत दृश्य है जिसमें एक नदी भी बह रही है जिसका नाम भगीरथी है।

जो का काफी अच्छे ढंग से सजाया गया है यहाँ कई श्रद्धालु आते हैं।

यह एक बहुत सुंदर पुस्तकालय है जहाँ पर काफी तरह की किताबें भी हैं।

और यहाँ काफी बड़ा कार्यक्रम है क्योंकि यहाँ पे जो एक-एक चीज है वो काफी अच्छे ढंग से रखी गई हैं।

और उसकी मरम्मत के लिए काफी सारे वाहन यहाँ पे आए हैं।

जिसपे सूरज की किरणों की वजह से यह दृश्य और भी खूबसूरत बन रहा है यहाँ पर म कई प्रकार के पेड़ भी हैं जिसके कारण यहाँ बहुत हरियाली भी है।

यहाँ पर लोग आके अपना समय बिताते हैं यहाँ पर घूमते हैं और यहाँ काफी सुंदर है।

यहाँ एक झील का मैदान है जहाँ पर रावण दहेन के लिए सभी लोग एकत्रित हुए हैं।